यहाँ एक घर है इस घर में एक गेट है और एक खिड़की है।

यहाँ पर चारो तरफ मिटटी डाली हुई है और बोहोत से गद्दे बनाये गए है और यहाँ पर कुछ व्यक्ति।

यहाँ पर तीन लाइने बनी हुई हैं और एक तिरंगा लहराया जा रहा है जहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

यह एक मंदिर है यह मंदिर बहोत ही बड़ा वा सुंदर मंदिर है इस मंदिर मे बहोत सारी --

यह कार पूरी तरीके से एक पन्नी से पैक है यह पन्नी ट्रैन्स्पैरन्ट है ।

चारो तरफ मैदान डाला हुआ है मैदान के बीचो-बीच एक छोटा सा तालाब बना हुआ है।